ये देखिए लड़का गाड़ी को जो धो रहा है कितना अच्छा से धो रहा है गाड़ी को खड़ा करने का भी तरीका भी बहुत अच्छा है देखिऐ।

देखने में एक धर्मस्थल भी गए हुए है यहाँ काफी आदमी आता-जाता होगा यहाँ पर आपने काम के लिए मनोकामना के लिए ताकि पुरा--

इसमें साइड में जो दिवार बाउंड्री दी गयी होगी बहुत अच्छा है जगह को देखने में लग रहा है कोई सरकारी जगह होगा।

बहुत खूबसूरत है बहुत कोई आ भी जा रहा है इ सब देखिये कितना डिज़ाइन से सब बनाया गया है सजावट की गई है पेड़ पौधे भी कितने अच्छे से सब भी बहुत--

ये जगह देखिये जगह देखने में तो लग रहा है कोई शॉपिंग मॉल है इसलिए तो यहाँ पर इतना आदमी इतना भीड़ लगा है सब कोई आता-जाता होगा शॉपिंग के लिए--